यह किसी ट्रेडर्स की दुकान है। जहाँ पर थोक में सामान मिलता है। इस ट्रेडर्स की दुकान का राम रहमानी ट्रेडर्स है। यह दुकान काफी बड़ी लग रही है। देखने में और काफी महंगा सामान --